साथ में ये जो दुकान है उस पे एक बैनर लगा हुआ है जिस पे जनता बुक लिखा हुआ है।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

जैसा कि यहां पे मैं देख पा रही हूं ये रात का समय यहां पे बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं जिसमें लाइटें जल रही है और कुछ--

डॉक्टर का भी क्लीनिक है डॉक्टर शुबोध कुमार उसके जस्ट बगल में एक--